ये एक किराना स्टोर के अंदर का फोटो है। जहां पर बहुत सारे डब्बे रखें हैं।

ये मैरिज गार्डन के बाहर का फोटो है जहाँ पिंक और वाइट कलर के पर्दों से डेकोरेट है बड़े बड़े --

ये एक बच्चो के कपड़ो की शॉप के बाहर का फोटो है। बोर्ड वाइट कलर का है जिसपे अबू कलेक्शन लिखा हुआ है।

गमले रखे हुए हैं जिसमे पेड़ लग रहे हैं। एक बहुत लम्बा सा पेड़ लग रहा है।

साइड में एक तार दिख रहा है। पीछे बड़े बड़े पेड़ लग रहे हैं। टॉवर के साइड में एक छोटा पेड़ हे ।

ग्लोबल स्कूल लिखा हुआ है। ब्लैक कलर का बड़ा सा गेट है पिंक कलर की बिल्डिंग है। छोटे बड़े पेड़ लग रहे हैं।

रेड बेग टंगा है ब्लैक बैग टंगा है ऊपर येलो बोर्ड है जिसपे टीटी डिजायर लिखा हुआ है।

एक वैन खड़ी हुई है। पेंट येलो कलर का है। बिल्डिंग पर वाइट और रेड कलर का पेंट है। गमले रखे हुए हैं।

ये एक रोड का फोटो लिया गया है जहाँ पर ट्रक खड़ा हुआ है। जो ऑरेंज कलर का है।

की वॉल पर पैंट है। पीछे बड़े बड़े पेड़ लग रहे हैं। अंदर एक पेड़ है। छोटा सा एक लड़का स्विमिंग पूल में जा --